और हमको देखने को मिल रहा है की यहाँ पर खाने का भी व्यवस्ता किया गया है।

और बगलस में उसके सड़क भी देखने को मिल रही है।

क्लासरूम का चित्र हमे देखने को मिल रहा है।

यह एक बच्चा जी बंजी जम्पिंग करते हुए--

और हमे एक नीला कलर का घर भी दिख रहा है।

बस का हमे कलर काले रंग को देखने को मिल रहा है।

इस चित्र में हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पे बच्चे टेस्ट दे रहे है और बच्चे ने वाइट और बच्चे ने ब्लैक कलर का टीशर्ट पहन रखा है।

और उस मित्तल की दीवाल पर हमे बहोत सारे आईने नज़र आरहे है।

इस फोटो में हमे देखने को मिल रहा है की यह एक गोदाम का चित्र है।

टुवेल किंगडम देखने को मिल रहा है और उसके बगल वाले पोस्टर पर हेलो बेबी केयर देखने को मिल रहा है।

की यह हमे ब्लू कलर का बाइक दिख रहा है यह हमे एक--

इस चित्र में हमे नज़र आरहा है की यह एक सुबह का चित्र है।

और इसमें बहुत सारे लड़के है और बहुत सारी लड़कियां है जो कि योगा करते हुए हमे दिख रहा है।

इस चित्र में हमे बहोत ज्यादा आदमी फ़ोन चलते हुए नज़र आरहे है।

और बिल्डिंग के सबसे ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि एक जिम है जिसका नाम स्ट्रांग फिटनेस है बिल्डिंग के बगल में हमें एक--

पोल दिखें को मिल रहा है पोल पर लाइटिंग दिख रही है।

और इस पूल पर हमे एक वर्ड बहोत दिख रहा है।

इस चित्र में हमें देखने को मिल रहा है कि छत का ढलाई हो रहा है और हमें एक टी_वी का एंटीना देखने को मिल रहा है।

इस चित्र में हमे देखने को मिल रहा है की यहाँ एक शाम का चित्र है।

और हमे एक पौधा नज़र आ रहा है बहुत सारे पौधा नज़र आ रहा है पेड़ भी हमें बहुत है नज़र आ रहे हैं।

इस चित्र में हमे देखने को मिल रहा है की यहाँ एक पार्क है।

इसमें हमे बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं।

और इसमें एक आदमी ने वाइट कलर का शर्ट पहना रखा है और आदमी--